ये टी.वी.एस. की एजेंसी है।

उसके अगल-बगल हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं जो काफी हरयाली से नजर आ रहा है।

कुछ इस टाइप के बैठते हैं।